मुझे इस तस्वीर में एक बहुत बड़ा तालाब दिख रहा है और उसके आगे में कई सारे पेड़ -पौधे भी दिख रहे है और उसके आगे में कई सारे छोटा छोटा पत्थर भी दिख रहे है और --

दोपहर का समय है और बहुत ही लकीर - लकीर भी दिख रहा है टीवीएमएलआई लिखाया हुआ हैं और एक पत्ती भी दिख --

सीढ़ी नज़र जैसे आ रहा है उसके चारों तरफ पेड़-पौधे दिख रहै हैं और उसके आगे में काफी सारा पुरूष और महिला बैठे है।

मुझे इस तस्वीर में एक चाय का दुकान दिखाई दे रहा है तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट लिखाया हुआ है और काफी सारा कप भी दिख रहे हैं और --

और दरवाजा दिख रहा है और नीचे में काफी सारा टाइल्स लगा हुआ है और बीच में लोहे का गेट भी लगा हुआ हैऔर रेलिंग भी लगा है बहुत ही अच्छा नजारा दिख रहा है।

और मिट्टी भी बहुत ही खूबसूरत दिख रहे है ऑरेंज कलर का और काफी सारा लोग लोग खेल रहे हैं।